इंजन रेलवे इंजन रेलवे का इंजन सामने दिख रहा है और यह शायद खड़ा है प्लेटफॉर्म पे और यह प्लेटफॉर्म का दृश्य है जहा पर खुला प्लेटफार्म है और हरे-भरे घास नजर आ रहे है।

यह कोई बाहर का दृश्य है जहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स नजर आ रहा है और सामने में उसके सामने मे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

ये एक घर है दो मंजिला घर है रात का सीन है और इस घर को अच्छे से सजाया गया है लाइट से सजी हुई नजर आ रही है अंधेरा समय है तो लाइट बहोत सुंदर लग रही --

ये पावर हाउस इलेक्ट्रिकल पावर हाउस का नजारा है जहां पर अ येलो कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा है।